और एक तालाब नजर आ रहा है।

कुछ ऱैक बने हुए हैं जिन पर बहोत से बॉक्सेस नजर आ--

यहां सामने एक मिठाई की दुकान नजर आ रही है।

कुछ बड़े पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

बड़ा सा गार्डन नज़र आ रहा है।

जिस पर घास बिछी हुई है।

यहाँ हम सामने बड़े से दुकान को देख रहे है सामने सफेद रंग के बोर्ड पर --

आम का समय दिखाई दे रहा है।

कुछ लोगों को देख रहे हैं।

साथ ही अन्य छोटे मंदिर भी बने हुए हैं।

एक बड़ा सा कांच का बाउल --

और बहोत से ड्राई फ्रूटस भी रखे हुए है साथ ही दो चम्मच भी नजर--

नीचे एक बड़ी सी नदी बहती हुई नजर आ रही हैं।

यहां हम सामने एक कमरे को देख पा रहे हैं।

उसके ऊपर हमे कुछ सोलर पैनलस नजर आ रहे है।